ये एक स्टेज हैं जिस पे कोई डांसिंग हो रही हैं लाइटिंग डाले हुए हैं जो बहुत सारे लोग इस सो को देखने के लिए बैठे हुए हैं।

और बहुत सारे बच्चो के डाइपर मेडिसन एक मेडिकल टाइप दुकान हैं जो बहुत सारे चीजे इसमें--

ये एक दुकान है जिसपे शैम्पू मैगी कुछ बहुत सारे चीजे लगे हुए है।

रूम है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुछ सिस्टम पे काम कर रहे है और किताबे कप्बर्ड पे लगी हुई है बहुत बड़ी है इस लाइब्रेरी में--

एक गैरेज है जो इस गैरेज पे एक कार खड़ी हुई है बट वो रिपेयर के लिए आई हुई है टायर्स पुरे बिगड़े पड़े हुए है।